रूम में एक समान रखे हैं।

नीचे मे एक ग्रीन कलर का डस्टबीन है।

एक ऊपर में चिड़िया उड़ रहा है।

सामने हम को केरोविट लिख के दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का पाइप बड़े वाला दिखाई दे रहा है।

गोल गोल जेबरा कलर से कलर करके है।

पोस्टर में बहुत सारा खाने का चीज़ दिखाई दे रहा है।

नीचे में कपड़ा भी सूखा के है।

अंदर में वाइट कलर का कार दिखाई दे रहा है।

दूर में एक स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही हैं।

आगे में एक आईना दिखाई दे रहा है।

यहां में हमको कपड़ा का दुकान दिखाई दे रहा है।

आगे में एक लड़का का फेस को ब्लर करके है।

यहां बहोत सारा सफेद कलर का कुर्सी है।

ये दुकान मे नहाने का कपड़ा धुलाने का साबुन दिखाई दे रहा है।

यहां में हमको शीशा का वॉल दिखाई दे रहा है।

टेबल भी येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां मैं बहुत सारा गेलन रके हैं।

दो डॉक्टर कंप्यूटर को देख रहा है।

यहां मे हमको बहुत बड़ा समुंदर दिखाई दे रहा है।

नीचे में पार्किंग लिख के है।

मुझे यहां बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाई दे रहा है।

साइड में पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में एक बाइक एक स्कूटी रक्खे हैं काला कलर में।

बहोत सारा प्लेट्स अलग अलग कलर में रक्खा हुआ है।

ऊपर में काला वायर दिखाई दे रहा है।

एक लड़का फोन पकड़के है।

इसके ऊपर तीन बॉक्स है उसमें बजाज स्टिंक हैं।